घर के बाहर भी बहोत साडी गाड़ियां खड़ी हुई है जिसमें से --

उसी के पास में एक स्टील का जग और गलास रखा हुआ है।

एक आदमी वहां पर बुड्ढी के बाल बेच रहा है।

उसके अंदर एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर काले कलर के गद्दे बिछे हुए है।

वह गेट अभी इस वक्त बंद है उसके ऊपर सह सहाय बालिका उच्च विद्यालय लिखा गया है अंदर एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

कलर की ऊपर काला आसमान है।

में स्टेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत से लोग पेट्रोल भरवाने के लाइन मे लगे हुए है।

उसके ऊपर लला कलर के दिल बने हुए है और दिलोन लगाए गए है।

और स्वेटर पेहना हुआ है वहाँ बहुत सारी बाइकों खड़ी हुई हैं।

रात का समय है एक दुकान का नाम लेक्मे सैलून है।

ये कहां ले जा रहा है जहाँ पर हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

स्कूल का ग्राउंड नजर आ रहा है जहाँ पर स्कूल की बस खड़ी हुई है जो पिले रंग की है।

शोरूम नजर आ रहा है जहाँ पर कई प्रकार के गाड़ियाँ रखी हुई हैं।